पुरे व्हाइट कलर का कमाल फूल डिझाईन का डिझाईन किया गया है और आसपास थोडे काम चल रहा है। वो भी नजर आ रहा है।

बसेस नजर आ रहे है और बस के आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे है यहाँ पे कुछ लोगों की चीजे नजर आ रही है और यहाँ पे जो है ऊपर एक छत जैसा नजर आ रहा है जो की --

एक राधाई हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का नाम ही राधाई है। यहा पे उनके जो चीजे है। वो सब रखी हुई है। नीचे की तरफ एक सीडी नजर आ रही है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ऊपर इसकी बड़े से पोस्टर लगे हुए है और नीचे सीढ़िया है जो की व्हाइट कलर की है।

अछी लग रही है आसपास थोड़ीसी झाडिया नज़र आ रही है और यह पे खाली सुमसान है ऐसा लग रहा ये दिन का समय है इसलिए यह पे लोग नहीं है नीचे का जो जगह है काफी क्लीन वगेरा नज़र आ रहा है।

खूबसूरत एक जगा है एक एयरपोर्ट है एयरपोर्ट पे यहा प्लेन रुकती है और यहा पे प्लेन लाँड़ भी करती है इसलिए वो जगह काफी क्लीन रखी रहती है यहा पे जो है बहुत सारे एयर होस्टेस वगेरा जो है।

पीछे की तरफ से थोड़ी सी ग्रीनरी नज़र आ रही है दूर-दूर तक उस नज़र आ रही देखने मे काफी अच्छा लग रहा है सुनसान और सनाटा नज़र आर रहा आसपास बहुत सारे --

को है साइड में लगाई हुई है और ये जो जो है काफी खूबसूरतीसे जो बोट है बनाई गयी है ये देखने में काफी ज्यादा इनोवेटिव लग रही है तस्वीर।